मकान दिखाई दे रहें हैं दरवाजा दिखाई दे रहा हैं शटर दिखाई दे रहें हैं चेयर दिखाई दे रही है ।

मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा हैं लाइट का सिस्टम दिखाई दे रहा हैं मंदिर का दरवाजा दिखाई दे रहा हैं।

कलर पर्दे नेटी लगी हुई है खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं ।

एक टेबल नीचे रखी हुई हैं परदे लगे हुए हैं ।

और येलो कलर के परदे लगे हुए हैं रेड कलर के फूल लगे हुए हैं ।

लाइटे लग रही है और आस पास बोहत सारी भीड़ दिखाई दे रही --